इस तस्वीर में बहुत काले बादल दिखाई दे रहे हैं और सड़क पे बहुत सी गाड़ियां भी दिखाई दे रही हैं।

यह तस्वीर एक गेम स्टोर की दिख रही है जहाँ पर बहुत से गेम नज़र आ रहे है रखे हुए। जो वीडियो गेम्स है।

स् बहुत सी चेयर्स रखी हुई नज़र आ रही हैं और एक तस्वीर भी लगी हुई है दिवार पर --